व चिल्लर फूलांचे व्यापारी ऐसा है यहा उनका एड्रैस भी दिया गया है और उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है।

यहाँ एक खान टू व्हीलर वर्कशॉप नज़र आ रही है जिसमें कुछ मोटरसाइकिल वहां पे --

यहां कुछ-कुछ यह भी नजर आ रही है यहां कुछ लोग भी नजर आ रहे है।

यहाँ एक डैम नजर आ रहा है जिसे पानी गिर रहा है यहाँ बहुत सारे लोग वहा डैम मैं नजर आ रहे है।

यहा एक विमान नजर आ रहा है जिस का पंख नीले कलर का नजर आ रहा है।

यहा बहुत सारा पानी नजर आ रहा है यहा बहुत सारे रंगी--

यहा एक बगीचा नजर आ रहा है जिसमे बो-बहुत सारे पौधों को--

यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है यहा एक झूला भी नजर आ रहा है।

नज़र आ रहे है वहां दूसरे किनारे पे बहुत सारे पेड़ पौधे नज़र आ रहे है।